दीवार पर अलग अलग कंपनियों के लोगो नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में एक जलाशय पार्क नजर आ रहा है यहां बहुत सारे लोग पानी में मस्ती कर रहे हैं।

फोटो में एक छोटा सा ढाबा या होटल नजर आ रहा है।

इस फोटो में घर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी दीवार ईटों से बनी है कुछ मजदूर काम कर रहे हैं एक मजदूर लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़कर काम कर रहा है।

आसपास युवक योगक योगा का चटाई भी रखा हुआ है।

मौसम साफ और दिन में धूप लग रही है।

ये स्कूल की इमारत और कई स्कूल में खड़े बसे नजर आ रही है।